उसके हाथ में वाइट कलर का एक कपड़ा भी है।

यह एक रात का सीन है।

पानी का कूलर नज़र आ रहा है।

यहां हमे एक कांच का शोरूम --

अलग अलग चीजों की दुकाने लगी हुई है।

ऊपर से झरना बेह रहा है।

यहां हमें एक स्टोर दिखाई दे रही है।

यहां हमें चश्में दिखाई दे रहे--

यहां हमें एक काउंटर दिख रहा है काउंटर पे लिखा है मे आई हेल्प ।

छोटे छोटे प्लांट दिख रहे हैं।

कार दिख रही हैं व्हाइट घर दिख रहें हैं।

यहां हमें एक डॉक्टर बैठे हुए दिख रहे हैं।

प्रिंटर काफी सारे दिख रहे हैं कांच में--

यहां हमें एक हरे कलर का मजार दिख--

का एक बोर्ड दिख रहा है।

उस पर अलग अलग गाड़ियों के--

यहां हमें एक मॉल उम मिल दिखाई दे रही--

का एक बोर्ड दिख रहा है।

यहां हमें एक दरवाजे की फैक्ट्री दिख रही है।

यहां हमें एक कार दिख रही है।